यह दृश्य हमें किसी कमरे का दिखाया जा रहा है।

इसमें हमें एक बेड पड़ा हुआ दिख रहा है।

बोर्ड पर फैसिलिटीस लिखा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

देखने से यह दृश्य हमें किसी--

इस दृश्य में हमे एक शायद--

बाहर कुछ लोग भी खड़ी हुई है।

शक्ति है इसकी बाहर एक ग्राउंड भी बन हुआ है।

शॉप की ऊपर हमें आस्था डोर्स विंडो लिखा हुआ नजर आ रहा है।

देखने से यहो हमें किसी सड़क का दृश्य दिखाया जा रहा है।

देखने से यह दृश्य हमें किसी बहुत बड़ी घर--

थ्री मु मूर्ति मूर्ति लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इस दृश्य में हमें एक कमरा दिख रहा है।